राष्ट्र आ भारती पब्लिक स्कूल है बाहर सरस्वती माँ बनी है और बहोत सारे बच्चे डांस कर रहे हैं।

यहाँ पर पेड़ हैं अम बड़े बड़े से और यहाँ बस स्टॉप है बस खड़ी हैं। बाहर भीड़े है बाइक भी है स्कूटर भी है।